की बाढ़ की समस्या इन लोगो मे दिख रही है।

एक भाईसाब अपना पैर उठाके यहाँ पे --

बढ़िय- सा प्रतीत हो रहा है।

बहुत सुन्दर सा नज़ारा है।

अब एक लोग ऊपर सवार होके बैठे हैं।

काफी बड़ा-सा पार्क है। देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

काफी अच्छा लग रहा है ड्रेस देखने में सुंदर सा प्रतीत हो रहा है।